इसके अंदर बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं।

बैनर लगा हुआ है और बहुत सारी बिल्डिंग में बल्लियां लगी हुई हैं और पर्दे भी पड़े हुए हैं।

और छत के ऊपर दो खिड़कियां भी हैं।

हॉस्पिटल की बिल्डिंग के ऊपर दो पानी वाली टंकी रखी हुई हैं और बहुत सारी विंडो दिख रही हैं।

और सोफा भी रखा हुआ है टेबल भी रखी हुई हैं बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं।

बैनर पर लिखा हुआ है ए_के फिटनेस जिम सेलिब्रेशन और आगे एक टेबल रखी हुई --

इस चित्र में हमें एक मंदिर दिखाया गया है।

हरे कलर की साड़ी पहने हुए हैं दो लड़कियां लाल कलर की साड़ी पहने हुए हैं।

मंदिर के अंदर एक आदमी जा रहा है और रोड पर बहुत सारे बिजली के खंभे लगे हुए हैं।

उसके पास एक आदमी खड़ा हुआ है।

इस चित्र में हमें एक कमरा दिखाया गया है।

एक गेट भी लगा हुआ है इसके अंदर बहुत सारी घास लगी हुई है।

और बहुत सारी लाइटे जल रही है और डीजल लिखा हुआ है।

इसमें एक गेट भी लगा हुआ है।

यह चित्र हमें किसी हॉस्पिटल का लग रहा है।

इस चित्र में हमें दो महिलाएं और चार आदमी दिख रहे हैं जो--

बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं और काफी किताब रखी हुई है।

छत पर बहुत सारे लाइटें जल रही हैं और एक कैमरा भी लगा हुआ--

जिसमें टेबलों का रैंक बना हुआ है।

एक घड़ी भी लगी हुई है।